अच्छा सा एक सीन है जहाँ पर एक तरफ पानी एक तरफ पहाड़ बहुत ही अच्छा सा एक बीच टाइप का है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और यह सब कुछ पहाड़ पत्थर से पानी से अच्छे से डिजाईन है।

प्रेगनेंसी जाँच करने के सान तरीका का प्रचार किया गया है। इस जगह पे बहोत ही अच्छे-अच्छे मेडिकल के स्टोर में बहोत अच्छे-अच्छे सामान बिक रहे हैं और ये सब सामानें बहोत आराम से इस जगह पर मिलती हैं। ये कि जो कि पोस्टर में दिखाया जा रहा है और इस जगह पे दवाईयों का भी अ --

बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ खाने के लिए पीने के लिए भी सामान बेचे जा रहे हैं और ये सब लोग वहां पर ले सकते हैं और ये बोट आराम से जगह पे अपने आराम कर कर रहे हैं और ये सब बहुत ही अच्छे से इसका आनंद ले रहे हैं।

बड़ा एक वाटरपार्क है जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इस वाटरपार्क में काफ़ी अच्छे से लोग अपने न हाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छे इस पर रह रहे हैं घूम रहे हैं अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं इस वाटरपार्क का।

काफी लोग आए हुए हैं इस गुफा में घूमने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग घुसते हैं और घूमने का अच्छा सा एन्जॉय करते हैं। इस जगह पे काफ़ी लोग आ कर अब आराम से घूम सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा जगह पर बनाया गया है।

बैठने की जगह बनाई गयी है जहाँ पर बहुत सारे लोग आ कर एक सिनेमा का एन्जॉय कर सकते हैं और अच्छे से --